यहाँ एक जगह है यहाँ पर बहोत सारे पड़े-पौधे और बहोत सारी हरियाली दिखाई दे रही है।

ओर यहां पर बहुत सारी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है

कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं इसके आस-पास कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे --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

वहां पर एक औरत भी दिखाई दे रही है और यह जगह बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बहोत सारे पंखे भी दिखाई दे रहा है और यह जगह बहोत ही सुंदर दिखाई दे रही है।